और इसपे एक पैसेंजर भी चढ़ रहा है इसके आसपास भी दो चार पैसेंजर है।

ये कार रिपेयर है यहां पे कार रिपेयर रिपेयर करी जाती है चाहे बाइक लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो रिपेयर करा जाता है।

ये स्विमिंग पूल है। यहां पे इतने सारे लोग भी हैं। यहा पे पिंक कलर के बैलून्स लगा रखे हर जगह पे।

सैलून में ना जैसे कटिंग वगैरा करवाते फेशियल वगैरा करवाते तो ये फोन ले कर उसमे फोटो खींच रहा है।

और ऑवर्स पैसिलेटी इज रिजल्ट मतलब पक्का पक्का रिजल्ट आएगा।

देखो रिसेप्शन करवाते हैं ना जैसे शादी वगैरह में करवाया जाता देखो कितने सारे लोग हैं पिंक कलर की इसकी सजावट कर राखी है।

हर एक चीज है यहां पे देखो और दो दो पांच मेंबर पांच छह मेंबर भी यहां पे खड़े हैं।

ये एक कैफे सा है जहां पे जैसे लोग खाने वगैरह वगैरा आते हैं यहां की देखो चेयर इतनी अच्छी है ब्राउन कलर का इनका सेटअप है सारा।

और इनके सारे शीशे से ही हुआ हुवा है सब कुछ काम।

ऐसे ही लगता है और यहां पे देखो कितने लोग घूमने आते हैं पर मेरे को इसमें दो चार ही दिख रहे हैं जो भी है।

किसी भी प्रकार के गारमेंट्स के गारमेंट्स होते हैं बॉयज की हो गई या इसमें बॉयज की ही है गर्ल्स की नहीं है।

ऐसी है देखो खेत है इसमें पेड़ भी लगे हुए हैं। इतने हरे भरे और यहां पर व्हाइट कलर की मतलब--

और यहां ले ये भी लिखा हुआ है देखो दिव्य योग मंदिर यहां पे योग मंदिर है ये।

देखो एक के हाथ में पता नहीं क्या है ये देखो काम कर रहे हैं यहां पे--

देख लो आप कितना और अच्छा लग रहा है ये बाहर से ही देखने मे कितना अच्छा लग रहा है।

तीन सौ पचपन तीन सौ निन्यानबे दो सौ निन्यानबे ग्रीन कलर की है पिंक कलर की है ब्लू कलर की है ऑरेंज कलर की हर एक कलर की देखो सारी थैलियां रखी हुई है।

इंडिया का कहते है ना झंडा भारत का--

और यहां पे बिस्कुट के पैकेट भी है।